मकान में कई खिड़कियां है। इसमें दो-तीन आदमी मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं।

रे के ऊपर लोहे की बड़ी सी जाली लगाई गई है। इसके नीचे बहोत सारी मेज कुर्सियां रखी गई है।